यहां हमे साइड में एक पेड़ दिख रहा है।

यहां पर हमें पीछे में गाड़ियां वगैरे दिखाई दे रहीं हैं।

क्योंकि यहां पर हाथों से बावली चित्रकला बनाई गई है।

साउंड बॉक्स वगैरे दिखाई दे रहे है ब्लूटूथ वगैरे दिख रहे है।

यहां पर हमें नवीन प्रसाद किया इमारत गोदिया ऐसा लिखा हुआ है।